पानी के किनारे एक बाउंड्री है बाउंड्री का कलर सफेद है।

चारो ओर हरे भड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

व्हाइट कलर की टेबल है और ब्लैक कलर की चेयर लगी हुई हैं।

शीशे की दीवार लगाई गई है।

ऊपर छत ख् का रंग काला है और उसमें लाइटें लगाई गई हैं।

ये तस्वीर एक मस्जिद की है मस्जिद के चार गुंबज नजर आ रहे हैं।

बॉर्डर पे रेड कलर का ओयो का बोर्ड लगा हुआ है।

येलो कलर की शर्ट पहने हुए एक लड़का अंदर की ओर जा रहा है।

जिसकी बीच में एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है।

सीमेंटेड बिजली के खंभे दिख रहे हैं।

कुछ दूर पर ग्रीन कलर के डस्टबिन रखी हुई है।

सामने की ओर दूर डस्टबिन है और ट्रेन भी है।

इसमें बहोत सारे लोग एकत्रित हैं।

तीन रेड कलर की कुर्सियां लगाए हुए हैं।

यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट की दिखाई दे रही है।

दूर में हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने दो डमी रखी हुई है जिसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ड्रेस पहनाई गई है।

यह तस्वीर में जिम दिखाई दे रहा है।

लड़के और लड़कियां डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं।

सामने हरी रंग की घास नजर आ रही है।

एक दीवार पे नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है।

सामने रेड कलर की कारपेट बिछाई हुई है।

सामने बाइक पे सवार एक महिला और पुरुष है।

बहोत सारे लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बगल में नाफीसा जहां लिखा हुआ है।

बेड के ऊपर पीली और लाल कलर की बेड शीट बिछाई गई है।

सामने एक लड़का मैरून कलर का टी शर्ट पहना हुआ है उसमें कुमकोनम डिग्री कॉफी लिखा हुआ है।

नीचे मैरून कलर की एक फ्रिज है उस पे गुलाबी कलर की फूल बनी हुई है।

आसमान क्लियर और नीला दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर बार कोड भी लगाया गया है।

हरे रंग की चेयर बैठने के लिए नजर आ रही है।

पीछे की ओर एक रेड कलर की टुकटुक है दो आदमी उसमें बैठे हुए हैं।

सामने ब्राउन कलर की शोकेस लगाई गई हैं।

पार्क के साइड साइड में छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं।

यह तस्वीर से यह दिखाया जा रहा है यहां कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है।

ये तस्वीर एक अपार्टमेंट कि है।

बीच से एक रोड निकला हुआ है उसके साइड में हरे भरे घास उगाए गए हैं।

बगल में कच्चे रास्ते भी दिखाई पड़ रहे हैं।

पीछे की ओर बैठी हुई एक ओल्ड लेडीज है।

पुरुष अपने कंधे पे एक गमछा रखे हुए है और हाथों में सफेद कलर का प्लास्टिक है।